और यहाँ में दो ठो स्कूटी भी दिखाई दे रही --

हमको यहां में दो रस्सी दिखाई दे रहा है।

साइन बोर्ड का कलर ऑरेंज और ग्रीन है।

हमको यहां में पेड़ भी दिखाई दे रा है।

कोई हमे एक आदमी भी दिखाई दे रहा --